ये सामने पहाड है काफी सारे पेड़-पोधे है।

नीचे मछली है एक बाल्टी है चक्कू है कुछ लोग मछली को खरीद रहे है।

पहाड़ है काफी सारा पानी है बीच में बोट है।

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर कुर्सिया हैं।

मैदान है मैदान में योगा क्लासेस चल रही है बोर्ड लगा हुआ है कीर्ति योगा यहाँ पर बच्चे मैट बिछा के बैठे हुए है योगा सिख रहे है।

अ मेज़ कुर्सी हैं सोफे हैं काफी सारे लाइटे जल रही--

ये सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड है क्राफ्ट पे किचन रखा हुआ है।

ल लाइटे जल रही हैं बोर्ड है।

एक दुकान है इसमें काफी सारे अलमारियां है जिसमे जूते रखे हुए है कुछ कपडे है काफी सारे लाईटे जल रही है।

काफी सारे दुकाने है बोर्ड लटक रहे है।